इस पिक्चर में एक कॉपी किताब की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहोत से कॉपी किताब रखे हैं और स्टूल भी पड़े हैं।

इस पिक्चर में सफेद रंग का गुरुद्वारा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर सफेद रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लाल रंग से श्रेया टॉय हाउस लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में एक पार्क बना हुआ नजर आ रहा है जीसमें एक ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में दो औरतें नजर आ रही हैं जो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए दिख रही हैं जिसमें एक लहंगा पहने है।

ऊपर की ओर नीले रंग का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे फीमेल जनरल वार्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक हरे रंग की और एक लाल रंग की गाड़ी है।

केक के चारों तरफ ओरियो बिस्कीट लगे है जो कि ब्लैक कलर के है।

नहेर के आसपास बहोत से हरे हरे पेड़ लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक कपड़े की दुकान नजर आ रही है जिसके ऊपर की तरफ तनायरा लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में एक टेबल पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर सफेद रंग की चादर पड़ी है।

रोड के किनारे हरी हरी घास लगी हुई है और कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में सफेद रंग का शादी का स्टेज फूलों से सजा हुआ दिखाई दे रहा है।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

बाहर की ओर पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।